एक बहुत बड़ा सा पक्के का एरिया बना हुआ है जिस में चारो कोनिया चारो कोनिया सी घांस की डिज़ाइन बनी हुई है।